ओर नीचे आलमारी हैं और किनारे किनारे--

और जंगल है जहां पे एक नदी है।

जो की खड़ी है। नदी तरफ जाते हुए नजर आ रही है।

बहुत सारे बुक्स रखे हुए हैं और एक आदमी है।

और एक अ ब्लू कलर का है और एक ग्रीन कलर का है।

बहुत ही अच्छा लग रहा है और एक सामान है सारे गमले और बहुत प्यारे दिख रहे।

बहुत बड़ा स्वीमिंग पूल है और किनारे होटल्स हैं और वहां पे लिखा हुआ है 'चेंजिंग रूम'।

और वहां पे कुछ अ लड़के बैठे हुए हैं जो ग्रुप में हैं और उसके आगे भी बहुत सारे लोग ग्रुप में हैं।

एक टेबल पर प्लेट में रखा हुआ है आलू का पराठा।

और ये देखने में अच्छा लग रहा है और यह खाने के लिए ही निकला गया है और पराठे बड़े अच्छे दिख रहे हैं थोड़े से टेढ़े मेढ़े नजर आ रहे हैं।

और ये एक रूम है वाइट कलर के पेंट से पेंट किया गया है।

चार लोग एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं।

और जो कि किताब लेने गए हैं और रास्ते में दो-तीन जेन्स हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं।

फूलों से सजाया गया है और गुबारों से सजाया गया है वाइट कलर के गुबारे हैं और ग्रीन कलर के गुवारे हैं।

और गेट पे एक गेंदे के फूल का वो गेट लगा हुआ है।

और सामने बहुत बड़ी-बड़ी पहाड़े नजर आ रहीहऔर बादलें सफेद रंग की दिख रही है ।

कोई आदमी नजर नहीं आ रहा है और पहाड़ों पर भी पेड़-पौधे बहो --

और ये वाइट कलर से कलर किया गया है और ऊपर बादल दिख रहे हैं ।

और इसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है और इन दीवारों पे--

और बहोत ही अच्छा दिख रहा है स्कूल ।

और बाकि बगल में भी एक दुकान है वहां पर भी बहुत सारेसे फल वैसेह लटकाय --

ये कपड़ों की दुकान है जहां पे बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं ।